बहुत ही अच्छा नजारा देखने को मिल रहे है बहुत ही अच्छा दृष्य देखने को मिल रहे है बहुत ही अच्छा दृष्य--

यहाँ पर जैसे लग रहे है कोई फंक्शन रखा गया है।

और ऊपर मे एक छत्त भी है जो घिरे हुए है बहुत ही अच्छा दृश्य देखने को मिल रहे है।

कुछ आदमी आ भी रहे है कुछ आदमी फोटो क्लिक भी कर रहे है बहुत ही अच्छा दृश्य देखने को मिल रहे हैं।